एक एल_जी का बहुत बड़ा स्टोर है जिसमे बहुत सारा एल_ई_डी टी_वी दीवार पर लगी हुई है और नीचे एक टी_वी चल भी रहा है और इसके नीचे बहुत सारे टी_वी रखे हुए हैं बहुत सारी लाइट जल रही है।

एक दुकान है जो बहुत बड़ा मॉल है सी_सी_इ_इ लिखा हुआ है उसके ऊपर एक ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुए है और एक भाई साहिब जो आ रहे है वो रेड कलर की शर्ट पहने हुए है और आगे भी पेपर रखा हुआ है।

बहुत बड़ा कपड़ों का माल है जो औरत का कपड़ा लग रहा है मेरे को और बहुत सारा लाइटे लगी हुई है।